और पास में हमें कुछ पेड़-पौधे भी दिखाए गए हैं यहां पे बिल्डिंग में काम चल रहा है जिसमें यहां पे ये बांस वगैरा लगे हुए हैं स्काई दिखाई दे रहा है।